एलआईसी बीमा तथा एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजे जा सकते हैं।

तो कुछ हिस्सों में छोटी-छोटी हरि-हरि घाँस देखने को मिल रही है।

कमरे के अंदर काले रंग का सोफा और कुर्सी रखे हुए है यहाँ पर लाल और सफेद गुब्बारों की मदद से --

लाल पीले सफेद कपड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सब त्रि सफेद और हरे रंग के गुब्बारो से सजाया गया --

उन सभी ने ज्यादातर मास्क लगा रखा है यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष --

यहाँ पर चमकीले लाइटे लगी हुई है यहाँ घर के बाहर काफी सारे कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है इसका नाम ए-वन एन जे बी पार्लर है यहाँ पर--

अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं तथा बाहर दो बच्चे बैठे हुए हैं बाहर साइकिल लगी हुई है तथा मोटरसाइकिल भी लगी हुई है बाहर दो बच्चे--

राजवेंदर कॉम्पलेक्स पीएच रोड कोरबा में है।

लडियो की मदद से सजाया गया है तथा बाहर काफी सारे रंग बिरंगी --

टेंट की बुकिंग कराई जाती है बाहर एक गाड़ी तथा एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर एक रेलगाड़ी लगी हुई है रेलगाड़ी के कोच पे लिखा हुआ है।

तीन दो जीरो आठ यहाँ पर अभी काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर टीन की छते बनी हुई दिखाई दे रही है।

तथा यहाँ पर धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा है तथा यहाँ पर एक सूरज--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक कार्यालय है यहाँ का नाम जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय है यह जिला कोरबा का--

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक महाविश्वविद्यालय है इसका नाम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध इंदिरा गांधी चीक--